चोट लगी हुई है बोहोत ज्यादा चोट लगी हुई है पैर में पैर --

ये सामने भारतीय स्टेट बैंक है और अंदर में

बंदे बैठे हुए हैं यहां पे और बिल्डिंग लगा रखी हैं पूरा मकान व्हाइट कलर का है और वाइट कलर में लाइटें लगी हुई हैं।

बहोत बड़ा मका बढ़िया मकान बना हुआ है डिजाइन बहोत बढ़िया दे रखी है।

एक दुकानदार है वहां बहोत बड़ी बड़ी आशा शोरूम बना रखा है लाइट लगा रखी है ब्राउन पेंट करवा रखी--

यह किचन बना रखा है किचन में तरीके की टाइल्स ब्लैक टाइल्स लगी हैं।

यहां पे बहोत सारे प्लांट है। छोटे छोटे पौधे हैं ये एक पौधों की नर्सरी है नर्सरी में यहां--

और यहां पे येलो कलर का पैकेज कुछ दिख रहा और ऑरेंज कलर का है।

ये एक दुकान है यहां एक लेके खड़े हैं और --

ये खाली मकान है यहां पे साइकिल खड़ी हुई है।